अ दो काले रंग की कुर्सी भाइयों और--

इलेक्ट्रानिक आइटम है और भाइयों शैंपू टंग रहे हैं।

बिस्कुट के पैकेट दे रहे न्यारे न्यारे रंग के भाइयों और--

पीले रंग का झूला है आ नीले रंग का पाइप लाग रेहा हरियाली पूरी तरह से छाई हुई है भाइयों मिट्टी के पहाड़ यहां पे और भाइयों हरे रंग के पेड़ लाग रे हैं।

साइड में आम का बगीचा है।

काले रंग की उसमें डेकोरेशन है लाइट चसन लाग रही है भाई दो तीन पंखे ऐसे हैं भाइयों और यहां पे लकड़ी की चेयर रख रखी है भाइयों।

बर्डे सेलिब्रेशन के लगा रखे हैं।

भाईयों पंखे वगैरा भी लग रखे हैं इसमें अच्छे कलर के--

भाइयों एक पूरी काले रंग की है।

काले रंग के दो ड्रम रखे हुए एक आदमी खड़ा है बीच में--

दुकान होया करे परर्च्यून की दुकान भाइयों यहां पर पैकेट रखे हुए है दस दस वाड़े बीस बीस वाड़े और भाइयों ईनो के पैकेट हैं बड़े बड़े --

भाईयों साइड में लाल रंग के लगा रखे हैं टेबल कुर्सी।

और लाल रंग की कुर्सियां गईं हैं उससे काम चला देंगे।

भाइयों यहां पे लेडिस के लिए और जेट्स के लिए जूते चप्पल हैं।

स्टील के वाला गेट है ट्रांसपेरेंट शीशा लगा रखा है जो आर पार दिखा करें।

देखो यह एक पार्क की फोटो हैं यहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहें हैं एक ये बच्ची--

यहां पे बगैर स्पोर्ट्स के भी जूते हैं और और भी जूते हैं।

एक कमल का फूल रखा है। नीचे गुलाब के फूल से सजा रखी है और एक--

और भी बहोत अच्छी अच्छी मालाएं हैं।

एक गाड़ी खड़ी है लाल रंग की आई ट्वेंटी ।

नीचे भाई छोटे छोटे घास हो रखी है।

भाइयों लाल और पीले और गुलाबी रंग का सजा रखा है मंदिर।

लाइट तो सारा लकड़ी वाली मेज है और लकड़ी वाली कुर्सी है।